पार यहां बाइक पार्किंग पार्किंग की जगह है जो कि बहोत सी बाइकें खड़ी हुईं हैं।

ऊपर लाइटिंग बहुत बढ़िया है।

यहां पे चीजें खरीदने का काउंटर है जिसमें बहुत से प्रोडक्ट जैसे पॉपकॉर्न होगा।

टाइमपास के लिए पॉपकॉन खरीद सकते हैं।

सामान उपलब्ध रहती हैं जैसे--

आइस क्रीम हो गया होगा केक है।

यहां पर गट्ठक रखे हुए हैं कापियों के सामने।

यहां किसी का मंदिर का यहां किसी का मंदिर का चित्र है।

और किसी बालकनी का दृश्य है ये।

और ये रात का दृश्य है जिसमें लाइटिंग लगी हुई हैं।

थकान को दूर करने के लिए आपस में बतियाने के लिए जाते हैं और यहां पे--

और उसके बगल में चटनी रखी हुई है।

जिसमे बहोत सी मॉडल की कार रखी हुई हैं इधर ट्रक भी रखा हुआ है बहोत बड़ा और हुंडई --

रखे हुए इधर फूड बंदगोभी है केले हैं।

बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है और समुद्र के उधर एक छोर पे पहाड़ों की गलियारी--

बहुत खूबसूरत बनाता है तालाब को तालाब जो है चारों तरफ पत्थरों से पत्थरों के बीच है।

क्लीप करने की जगह भी बहोत सुंदर है उधर।

डेस्क डेस्क है और डेस्क पर बच्चे पढ़ रहे हैं।

पूरा का पूरा सेटअप उधर दूर पोस्टर लगे हुए हैं।

प्रे करने के लिए प्रार्थना करने के लिए यहां पे आते हैं।

और यह बहोत बड़ा चर्च --

इधर पीछे भी फूल फूलों की बहुत अच्छी गलियारी लगी हुई हैं।

उन समस्याओं का समाधान बताते हैं या उनका सलाह दे--

रोज वर्कर काम करने के लिए आते हैं अभी इस तस्वीर में काम से कम--

ये कुछ काम कर रहे हैं ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी यहां पे--

टेबल है जो कि उसको भी सजाया गया है।

डी_जे सेटअप पूरा लगा हुआ है।

और यहां एक बड़ी मशीन से चलाई जाती है।

और यहां पे कलम से कम से कम पंद्रह से।

किसी प्रोग्राम को देखने के लिए यहां पे आए होंगे।

उनको खुश करने के लिए उनको गीत सुनाने के लिए--

अं फूल फूले हुए हैं जोकि बहुत अच्छे दिख रहे हैं और उधर दूर बिल्डिंग --

बन रही है जो कि काम चल रहा है।

दीवाल पे ड्रैगन का चित्र भी है ऊपर पोस्टर भी लगे हुए है।